यहां पर एक स्टेट बैंक ए_टी_एम का बोर्ड है भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारे सोलर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर बहुत सारे--

यहां पर बहोत सारे पोल भी लगे हुए दिखाई--